और एन.के. के जस्ट ऊपर बोर्ड लगा हुआ हैं बोर्ड में स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ है और एक कार दिखाई दे रही है कार का बैक पोर्शन ।

नीचे जमीन दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ ख घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

और एक दो कारे खड़ी हुई हैं कुछ बाइके और स्कूटी खड़ी हुई है एक डस्टबिन रखा हुआ है सामने आसमान दिखाई दे रहा है खुला।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी सीटे पड़ी हुई है उन सीटों पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ।

और सामने स्टेज सा बना हुआ है | कुछ फैन लगे हुआ हैं जिनके उपर लम्बे-लम्बे पाइप लगे हुए हैं |

एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ है आगे उसके ट्रेक्टर या बस वो दिख रही है उसका फ्रंट दिख रहा है बस और रात का सीन है ।